इस इमेज में पाँच महले कि इमारत दिख रही है। निचे एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस इमेज में अंडर कन्स्ट्रक्शन दो वाटर स्लाइडर नज़र आ रहा है।

इस इमेज में गार्डन नज़र आ रहा है। गार्डन में अलग-अलग किसम के झूले नजर आ रहे हैं। अलग-अलग कलर के भी आ रहे हैं। नज़र और झ-झाड़ भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं।

इस फोटो में बहुत बड़ा पोल दिख रहा है जिसके उपर से काफी सारे वायर गए हुए हैं।

पीछे की तरफ में दो गाड़ियां हैं। एक उसमें से सफेद कलर की गाड़ी है।

ये इमारत यलो कलर में है इसके आगे एक लंबा सा खंबा है लाइट का।

इस इमेज में साइकिल नज़र आ रही है। साइकिल के आगे एक लंबी सी सीढ़ी रखी हुई है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं ऊपर से फ्लाइओवर ब्रिज नजर आ रहा है।

और साइड पर एक बड़ा स पोल है।